और ये गाड़ियां बहुत सुन्दर-सुंदर हैं और फैमिली वाली गाड़ियां हैं।

ये दृध्य गंगा सेतु का है इसमें बहुत सारे लोग स्नान करने के बाद पूजा अर्चना कर रहे है।

जो काफी सुन्दर और रंग-मंच वाला है।

ये जो दृस्य दिख रहा है इसमें काफी सारे छोटे-छोटे फूल के पौधें लगे हुए हैं जिसमें गेंदा और बहुत प्रकार के किस्म के फूल लगे हुए हैं जो काफी आकर्सक दिखाई दे रहे हैं।

दृस्य में ये देखाई दे रहा है की यहाँ हिमालय क्षेत्र है और ये फील्ड में छोटे-बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

और ब्यूटी पार्लर में लड़कियों का मेकअप वैगरह होता है।